ईमारत के ठीक आगे कुछ छोटे-छोटे घर और पेड़-पौधे दिख रहे है एक घर पर काले रंग का टंकी भी रखी गयी है।